टैंकर भी खड़ा है लोहे की रोडे भी रखी हुई है साइड में बहुत सारी बोरियाँ भी रखी हुई है जो कि भरी हुई हैं।

और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा है उसका ओपन टाइम नाइन ए.एम. टू एट पी.एम. ।

यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है जिसको मास्क पेहना हुआ है चश्मा पेहना है ग्रे कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है।

साइड में दो लोग भी खड़े हैं ऊपर छपरा बना हुआ है जो की पूरा पैक है।

इसमें दो प्रकार की शेरवानी रखी हुई है।

इसके आगे जीप खड़ी है उसके आगे एक लोहे की रेलिंग बनी है जिसके ही आगे बहोत सारी रेत रखी हुई है।

और नीचे ब चार-पांच दुकाने बनी हुई है।

यह एक मंदिर हैं जो की ग्रीन कलर का है जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ दिख रही हैं।

थोड़ा ये अंदर जा के ऊपर घंटिया भी बनी हुई है साइड में एक अंकल भी बैठे है स्टूल पे।

यह एक संचय केंद्र बना हुआ है जो कि ऑरेंज और येलो कलर का है जिसके पीछे से बहुत सारे पेड़ बने हुए है।

यह एक पारौणिक ईमारत लग रही है जिसका कलर छूटने के कारण कहीं ऑरेंज और कहीं ग्रे कलर रंग का हो गया है।

यहाँ एक एल.इ.डी. बोर्ड लगा हुआ है जो जिसपे --

इसमें बोहोत सारे पहाड़ बने हुए हैं। आगे छोटे छोटे पहाड़ और पीछे बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं।

उसके ऊपर छोटे-छोटे खम्बे लगे हैं जोकि लाल और नीले रंग के हैं।

ग्रे और रेड कलर के बने हुए हैं।

यहाँ पे एक आईना रखा है।

सामने दिवालो पे स्काई ब्लू रंग बना हुआ है।

और एक पंडित भी हैं।

यहाँ पे एक दरवाजा भी है जोकि स्काई ब्लू रंग का है।